यहाँ पर एक्सिस बैंक ए.टी.एम. है ।

यह आदमी पेन निकाल रहा है पेन का दाम लगभग पच्चीस रुपये है।

यहाँ एक पानी टंकी हैपानी टंकी के बगल में एक पेड़ है |

और खेत के थोड़ा बगल में के एक तालाब है उस तालाब से खेत की सिंचाई होती है पानी लाया जाता है।